दो बाइक खड़े हुए है बाइक के ऊपर हेलमेट रखे हुए है।

मे बैलूनस लगे हुए है पिंक वाइट डार्क येलो कलर के --

इन उसमे एल. इ. डी रखी हुए है।

एंड लक्ष्य इंटरनेशनल अकादमी का बैनर लगा हुआ है बोर्ड उस पर बैलून्स लगे हुए है ग्रीन कलर के --

फूल रखा हुआ है स्टूल के पीछे कट्टा रखा हुआ है उसमे रखी हुई है।

होटल लक्ष्मी पैलेस बना हुआ है।

वाईस डांस के पोजीशन में खड़े हुए है।

एक जेंट्स साइकिल ले के खड़े हुए हैं।

पेन बुक्स रखी हुई है ऊपर पंखे टियूबलाइट लगे है।

पेड़ लगे है स्टेडियम के बाहर --